रेस्टोरेंट को सोफे तथा टेबलों से सजाया हुआ नजर आ रहा है।

रेस्टोरेंट की दीवारों को गुब्बाड़ो से सजाया हुआ लग रहा है।

एक लड़की रास्ते से गुजरती हुई भी दिखाई दे रही है।

तथा टेबल पे बहुत सारा सामान रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

जिसपर राजपूत इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ नजर आ रहा है।

तथा चौक के दूसरे साइड घर का काम होते हुए नजर आ रहा है।

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके उपर स्टेट बैंक का ए_टी_एम लिखा हुआ नजर आ रहा है।

तथा गूढ़े नीले रंग के खंभे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें ज्वेलरी शॉप के अंदर का नजारा दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट की दीवारों पर बहुत सुंदर तरीके से आकृति और चित्र बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

दुकान के अंदर एक टेबल दिखाई दे रहे हैं जिस पर बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दुकान के बाहर एक साइकिल खड़ी भी दिखाई दे रही है।